यह यहाँ-यहाँ पर एक बिल्डिंग बना हुआ है जो कि यहाँ लिखा हुआ है गिरजाघर।

झाड़ू और आ बहुत प्रकार के यहाँ मिलता है एवं इत्यादि --

नारायण हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है डॉक्टर चन्द्रकिरण यहाँ मरीजों का इलाज होता है एवं उनकी स्वस्थ --

यह एक तालाब का पानी है जो कि यहाँ पूल बनाया है जो पूल --

यहाँ पर काम करते हुए मजदूर अपने इनके सहारे टाइल्स को --

खराब से भी खराब चीज अच्छी अच्छे बना बनाया जाता है यह एक मैकेनिक है ।

गिरने जैसा लग रहा है और इसके कलर यह कलर लेस हो गया है एवं --

फ़ोनपे गूगल पे द्वारा कर सकते हैं।